यहां पे अलग अलग रंग की और अलग अलग डिजाइन की और अलग अलग साइज की कुर्तियास नजर आ रही हैं।

बिजली के खंभे भी दिखाई दे रहा है यहां पे एक बहन जी सामान लेके चलती हुई दिखाई दे रही है।

यहां पे साइड में दो बहेन जी भी है जो एक लेडी के पास यानी कि एक स्टूडेंट का--

अलग अलग कलर के और साइड में पानी पीने के लिए कुछ रखा हुआ है बर्तन जैसा।

ऐसा लगता है कि जैसे की शादी की फोटो --

अ ब्लू कलर के पत्ते रखे हुए चारों तरफ यहां पे एक कार पार्किंग में पड़ी है व यहां पे दो एक्टिवा भी पार्किंग में है।